पेड़ पौधे प्लास्टिक के पेड़ पौधे यहां पर मिलते हैं अलग अलग तरीके के कलर की भी पेड़--

पेड़ फूल वगैरा यहां पे गुलदस्ते वगैरा यहां पर सब मिलते है और भी यहां पे वो आइटम --

कॉपी किताबें वगैरा सभा में पड़ी हुई है और लाइटें भी लगी हुई है सबका अ अ अलग केबिन भी बना रखा है यहां पर --

पराठा सेंटर भी है और पेड़ पौधे भी लगे हुए--

ये एक हार्ट एंड कॉडी रीडोरिक्स वैस्कुलर सर्जरी है यहां पर जैन आई सेंटर भी है यहां पे --

और लाइटिंग भी लगा रखी है तीन चार मंजिल का बना हुआ है।

और हॉल ऑर्डर आते हैं ये एम_एस वैशाली नगर में हैं ये मैन्यफैक्चरर भाई ये उसके बाहर दो लड़के खड़े हुए हैं।

ये नर्सरी है ये पेड़ पौधे यहां पर घास वगैरा भी यहां पर मिलती है और उसके ऊपर --

सारा बड़ा स्विमिंग पूल है यहां पर गुब्बारे भी लगे हुए है और भी यहां पर --

ये एक मॉल है यहां पर बच्चों के कपड़े मिलते है शॉर्ट्स वगैरा टी शर्ट वगैरा और भी यहां पे --

ये गोलछा सिनेमा हॉल है ये ये बहोत बड़ा गुलाबी कलर का उसपे पेंट हो रखा है।

और यहां पर बा बाइक वगैरा भी खड़ी हुई है अंदर कारे भी वहां पे खड़ी हुई है ये पा ये पार्किंग एरिया भी यहां बना रखा है बहोत अच्छा --

ये खिलौने की दुकान बना रखी यहां पर।

ये एक मॉल है यहां पर हाइपर सिटी का मॉल है ये बहुत बड़ा मॉल है यहां पे डी_मार्ट वगैरह भी ओपन हुए है।

और पेड़ भी लगे हुए हैं साथ में घास वगैरा भी लगी हुई है बैठने की सुविधा भी बहुत अच्छी है।

बच्चों राजपूती वगैरा आ पर हर रंग की ड्रेसे मिलती है और भी --

और शॉप कम से कम किराए पर उपलब्ध भी है यहां पर और ये यहां फेशियल अड्डा भी है यहां पे पूमा एडीडास वगैरा के शूज भी यहां पर मिलते हैं।

ये गणेश जी का मंदिर है ये मोती डूंगरी में है ये बहुत बड़ा मंदिर है बहुत फेमस --

और यहां पर लाइटें भी बहुत अच्छी तरीके की लगा रखी हैं यहां पर।

भी है और ये एयस टॉयस् को गुब्बारों से अलग अलग गुब्बारों से सजा रखा है अलगलग रंक रंग के गुब्बारों से इसको सजा रखा है।

यहां पे बच्चों के खेलने की जगह भी है और यहां पे स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए भी लोग आते हैं और हरी हरी घांसे पेड़ पौधे वगैरह यहां पर सब लगा --

यह माला की दुकान है यहां पर फूलों की माला बनाई जाती है यहां पे गेंदे का फूल है और भी --

एक घास वगैरा उगा रखी है पेड़ पौधे उगा रखे हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और भी बहोत सारे यहां पे --